ग्रीन और वाइट कलर की टॉवल डाली हुई है यहाँ पर दीवार पर एक पंख लगा हुआ है घड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर कुछ लोग बैठे खड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक बी_पी मशीन-- भी रखी हुई--

यहाँ पर एक अंकल और एक आंटी खड़े हुए हैं अंकल जिन्होंने हैट लगा रखा है दोनों खड़े हुए फोटो खींचा रहे हैं यहाँ पर एक ग्रिल दिखाई दे रही है।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

यहां पर एक बड़ा सा ग्रे कलर का हाथी दिखाई दे रहा है जिसके व्हाइट कलर के दांत दिखाई दे रहे हैं यह हाथी पत्थर का बना हुआ है जो काफी सुंदर लग रहा है।